यह एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

और काफी सारे बैठने की भी चीज यहां पे--

और यहां पे बहोत सारे खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है।

इसमें मुझे तो उतना कुछ नहीं पता शायद--

जहां पे ट्रैक्टर एंड पुलिस वाले भी इसमें--

यहां एक प्यार सा कमरा हॉल टाइप सा मुझे--

एंड इत्यादि यहां इसका कलरफूल भी मस्त डिजाइनिंग हुआ है।

इसमें देख पा रहा हैं और रेस्टोरेंट में काफी सारी--

इसमें बहोत सारी मछली मछली का कहना है मतलब--

यह किसी समुद्र से पकड़ के शायद--

इसमें लाया गया है जैसा कि मैं यहां तस्वीर में देख पा रहा हूं।

देख पा रहा हूं कपड़े भी हरे भरे नीले पीले--

आता हुआ दिखाई दे रहा होगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूं--

देख पा रहा हुं और बहोत सारी यहां पे बच्चियां भी तेलगु समाज की नजर आ रहीं हैं।

हर चीज दिखता हुआ नजर आ रहा होगा यह किसी एयरपोर्ट का दृश्य मुझे--

दिखाई दे रहा होगा दुकान और यहां पे साइकल गाड़ी बहोत सारी--

इस फोटोज़ के दृश्य में देख पा रहा हूं।

दृश्य मुझे नजर आ रहा है।

लगा हुआ है और नीचे भी बहोत घास फूस--

लगी हुई दिखाई दे रही है जैसा कि मैं यहां समझ पा रहा हूं इसमे शयद आपको भी नजर आ रहा होगा फोटोस एंड विडियोस मे--

जैसे देख भी पा रहा हूं और समझ भी पा रहा हूं पर यह डिजाइन तो मुझे समझ नहीं आ रहा बट --

दिखाई पढ़ते हुए दिख रहे हैं।

आई_सी_यू का रूम दिखाई देता हुआ मुझे--